यहाँ पर एक पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है जिसमे कार पार्क है बाइक और स्कूटी पार्क कर दी गयी है।

और एक पेरिंग भी दिखाई दे रही है अ कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे --